ये बीच में एक वाटर फिसलन दिखाई दे रहा है जहाँ पे आदमी आ के पानी में फिसल के अपना मनोरंजन करते हैं ।

यह एक बहुत ही पुराने बिल्डिंग है।

इन सभी गाय को खाने के लिए उनके आहार दिए गए हैं।

यह दृश्य में बस स्टैंड दिखाया गया है।